मुझे इस फोटो में गार्डन नजर आ रहा है मुझे इस फोटो में--

फोटो में सीट नजर आ रही है।

में ब्रैकेट नजर आ रहीं हैं।

पहाड़ नजर आ रहा है मुझे इस फो--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

मुझे इस फोटो में लेडिस नजर आ रही--

मुझे इस फोटो में हमें लकड़ी की चेयर नजर आ रही है मुझे इस फोटो में--

मुझे इस फोटो में पार्लर नजर आ रहा है मुझे इस फोटो में मेन --

फोटो में फैन नजर आ रहा है मुझे इस फोटो में सोफा नजर आ रहा है।

मुझे इस फोटो में बर्फ नजर आ रहे हैं।

तो मैं लैपटॉप नजर आ रहा है मुझे इस--

मुझे इस फोटो में लड़की नजर आ रही है।

टो में खिड़की नजर आ रही है।

मुझे इस फोटो में स्कूल नजर आ रहा है।

मुझे इस फोटो में कच्चा घर नजर आ रहा हैं।

मुझे इस फोटो में कार वॉशिंग नजर आ रहा है।

मुझे इस फोटो में फैक्ट्री नजर आ रही है मुझे इस फो--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

कपड़े नजर आ रहे हैं मुझे इस फोटो में--

टो में सोलर पैनल नजर आ रहा है।

मुझे इस फोटो में पानी नजर आ रहा--

मुझे इस फोटो में हॉल नजर आ रहा है।

मुझे इस फोटो में मल्टी नजर आ रही हैं मुझे इस फोटो --